नीचे में पांच फेस वॉश वगैरह हैं काफी सारा सामान है।

और सीढ़ीओ से कोई जा आ इधर बाजू में एक दुकान भी हैं।